ब्लू कलर की पैंट है और कुछ पेड़-पौधे भी --

कीर्ति नामस- कीर्ति योगा नाम से कुछ कंपनी हैं।

उम गेट का पेंट ब्लैक कलर में हैऔर कुछ घर बन भी रहा है। ऊपर की तरफ तो बहुत बड़ा बादल भी देखने के लिए मिल रहा है।

यह देखिए आप को सामने की तरफ एक आरती देखने को मिल रही है उसमे बहुत सारे लोग भी खड़े हुए है।

और कुछ लाइटे भी लग रहे है और कुछ घर भी बन रहे है।

सामने के तरफ मंदिर देखने के लिए मिल रहा है और बहुत सारे बादल देखने के लिए वो दिखिये |